बेंचो का कलर ब्राउन कलर है दो पर्दे भी लग रहे हैं और इसका नाम अमृत होटल है।

और एक मुझे बगल में चद्दर वाला एक घर भी दिख रहा है और वहाँ पर पेड़ हैं --

और ये पक्का सा रोड दिख रहा है और यहाँ पे घर दिख रहा है ऐसा लग रहा है बन रहा हो अभी और यहाँ पर मुझे पेड़ भी दिख रहें हैं बहुत पीछे एक केला का पेड़ भी दिख --

टाइप भी दिख रही है कुछ और पानी की बोतल रही हैं बहुत सारी टॉफीज रखी हैं रेड कलर की एक डलियां रखी हैं।

गणेश जी की प्रतिमा रखी हुई है बगल मे दो माता जी की पूरे में ग्रीन से ग्रीन और व्हाइट बैलून से डेकोरेशन हो रही है बहुत सारे फ्लॉवर्स भी रखे हुए है।

गणेश जी की बहुत बड़ी सी प्रतिमा है एक पंडित जी है शायद वो पूरे बगल में पूरा ग्रीन कलर की दीवाल या पर्दे टाइप है।

नदी जैसी दिख रही है उसमें बहुत सारा दलदल भरा है और यहाँ पर मुझे पेड़ भी दिख रहे है मुझे दो बड़े-बड़े खम्बे दिख रहे है उनमें से लाइट जा रही है शायद --

शॉप है जिसमे बॉडी लोशन्स दिख रहे है मुझे टॉफिस दिख रही हैं और भी बहोत सारी चीजे हैं इसमे एक सटल लग रही है।